काहां उत्तर प्रदेश कि ये गुफा है और ये देखिए गुफा मे काफी सर्किट वगैरह लगी हुई है।

सकते है ये जिला चिकितकषालय है जी कृष्ण हॉस्पिटल है।

ये देखिए जो आप मंदिर देख रहे हैं यह बुद्धा का मंदिर है। यह बुद्ध का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर ये वो दान पत्र रखा हुआ है।

देखिए ये काफी बड़ी नदी है। और ये देख सकते हैंनदी की ये बनाने की काम चल रहा है।

ये देखिये ऐसा लगता हैये जंगल की फ़ोटो है यहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं देखिये कितने पत्थर हैं ।